मस्ती-वस्ती करने के लिए--

दो बच्चे हैं और गार्डन में बहुत सारे लोग भी हैं।

और क्लास में लड़की-लड़का--

महिलाएं दिखाई दे दे रही हैं।

नमाज पढ़ने आते है।

और बगल में ठेला ओला लगा हुआ--

यहँ रायगढ़ का एक रेलवे स्टेशन है।

फोटो खींचा रहा है।

यह एक एक्सिस बैंक है।